ब्लैक हैं टीवी लगे हुए हैं।

दिख रहे हैं ये दिन का मंज़र है ।

और यहां हरे भरे झाड़ भी बहुत दिख रहे हैं।

यह एक छोटा सा खेत दिख रहा है यहाँ पर एक बाइक भी खड़ी हुई है इसका नाम बुलेट है।

और गोला आसमान भी दिख रहा है और यह दोपहर का मंजर है दिख रहा है।

और बोहोत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

हिस्से में खुला आसमान भी दिखा रहा --

ऊपर खुला आसमान भी दिख रहा है ।

पर बेठा है उसके सामने एक टेबल भी रखा हुआ है ।

ये रात का मंज़र दिख रहा है।

छोटे छोटे पोधे भी रखे हुए हैं ।

एक बड़ा सा पेनल भी दिख रहा है।

और यहाँ बोहोत बड़े बड़े झाड़ भी दिख रहे हैं ।

ये एक चर्च दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोग --

और यहाँ बोहोत सारे छोटे छोटे पत्थरें भी रखे हुए हैं।

और छोटे छोटे लोटे भी रखे हुए हैं।

अ ओ येल्लो कलर में थालियाँ रखी हुई हैं।

यहाँ पर बोहोत सारी गाये दिख रही हैं गायों का कलर --

और बोहोत सी गाड़ियाँ भी दिख रही हैं।

ऊपर खुला आसमान भी दिख रहा है।

ब्लू कलर का पोस्टर भी लगाया हुआ है।

ऊपर खुला आसमान में दिख रहा है।

येल्लो कलर के कुछ --

और यह खुला आसमान भी दिख रहा है बाज़ू में एक ग्रीन बोर्ड भी लगा हुआ है।

ये एक तरकारी मार्किट दिख रही है।